यहाँ पर एक बड़ी सी काली मूर्ति देखी जा सकती है जिसे माला पहनाया गया है ऊपर कुछ कपड़े ओढ़ाए गए है यहाँ पे कुछ फूल बिछे देखे जा सकते है फूल का कलर लाल दिखाई दे रहा है कुछ सफ़ेद कलर के भी--

टाइल्स बिछा हुआ देखा जा सकता है पिछे भी कुछ बड़े बड़े गेट जैसे देखे जा सकते है पिछे कुछ पेड़ पौधे देखे जा सकते है उपर पर आकाश देखा जा सकता है।

बगल मे एक फ्रिज जैसा कुछ देखा जा सकता है जिसके तारे लगी हुई है और एक पंखा देखा जा सकता है पिछे खिड़की देखी जा सकती है बाल्कनी मे रेलिंग दिया गया है पिछे कुछ हरे हरे पौधे भी देखे जा सकते है।

उपर कुछ बोतले लगे देखे जा सकते है। उपर कुच्छ पोस्टरर्स भी लगे देखे जा सकते है। दो खुरसियाँ देखि जा सकती है। आगे की स्टूल जैसा कुच्छ देखा जा सकता है जिसमे कुछ सामाने रखी गई है।